उस पीछे की ओर कई सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और कई सारे पल्ले रखे हुए हैं।

और पीछे की ओर एक बाइक खड़ी हुई है।

और छतों में डिजाइन भी बने हुए हैं।

पंखे दिखाई दे रहे हैं।

और दीवार पे गमले बोर्ड घड़ी दिखाई दे रही है।

और शीशा दिखाई दे रहा है।

बहुत ही सुंदर जगह है।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

एक जीना दिखाई दे रहा है।

पीछे एक भोड़े की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।

जिसमें कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

कइ सारी लाइटें भी लगी हुई है।

कुछ कार वैसे ही खड़ी हुई है।

कार के ऊपर एक बोतल रखी हुई है।

जिसमें क्लीन सारा पानी दिखाई दे रहा है।

चार बोतल दिखाई दे रही हैं।

यह एक बहुत ही अच्छी जगह है।

जिसमें कई सारे जुगाड़ रखे हुए हैं।

में कई सारे व्यक्ति बच्चे महिलाएं दिखाई दे रहे हैं।

और सामने घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और कहीं सारी कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

और ऊपर कई सारे पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और कैमरे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक लाइन दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है।

जाल भी दिखाई दे रहा है।

और एक स्टाटर भी दिखाई दे रहा है।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

एक दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

पीछे कहीं सारी लीची और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर टीन पड़ी हुई है।

और कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

और सोफे दिखाई दे रहे हैं मेज दिखाई दे रही है।

और लाइटें दिखाई दे रही हैं।

जो बहोत ही अच्छे सज से सजा हुआ है।